हमें बहुत सारी कारें गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही हैं।

उसके चेहरे पर सफेद मास्क लगाई हुईं हैं।

और द पाम कोट लिखा है।

लाल और हरे रंग की कुर्सियां लगी हैं बहुत सारी।

आदमी हैं और गाड़ियां नजर आ रही हैं।

टेबल दिखाई दे रहा है और कुर्सियां लगी हैं।

और वहां भी कुर्सियां और टेबल लगे हैं।

एक तरफ नीली पन्नी के नीचे भी काउंटर बना है।

और ऊपर बड़ा सा एक बोर्ड है जिस पर मैट्रिक सिनेमास लिखा है।

एक और आदमी सामने उस तरफ खड़ा है।

पीले सफेद लाल रंग के फूल हैं।

और हमें आदमी बैठे हुए महिलाएं भी नजर आ रही हैं।

इस तस्वीर में गिली-गिली रास्ते पर हमें पानी--

कुर्सियां रखी है काली और सफेद।

एक आदमी लाल टीशर्ट पहना है और हाथ में स्टिक है।

लाइटें छत में लगी हुई हैं बड़ी-बड़ी--

और हमें जमीन में कारपेट बिछा दिखाई दे रहा है।

बहुत सारी अअ स्टॉल लगी हैं।

गाड़ियां खड़ी हैं पेड़ों के पास--

महिलाओं ने अपने दोनों हाथ ऊपर जोड़े हुए हैं।

इस तस्वीर में हमें पानी भरा हुआ तालाब दिखाई दे रहा है।

और ऊपर सफेद आसमान हमें नजर आ रहा है।

पीले रंग की दीवारें हैं और काले रंग के पीछे परदे लगे हैं।

तस्वीर में हमें गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही हैं।

शॉप फॉर सेल का बोर्ड लगा है।

तस्वीर में हमें बहुत सारी कुर्सियां लगी दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में एक काउंटर लकड़ी का बना है।

और सामने हमें सफेद बादल--